पेड़ नजर आ रहे हैं और ऊपर नीला नीला सा आसमान भी दिख रहा है.

सामने देखे तस्वीरे टंकी हुई है पांच तस्वीरे टंगी हुई है सामने और खिड़की भी दिख रही--

एक टॉय ट्रेन नजर आ रही है मिनी ट्रेन नजर आ रही है बच्चों के बैठने के लिए --

यहां पर देखिएगा फ्रेंड्स एक बड़ा सा दुकान दिखाई दे रही है बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा है बाबला फैशन .

और कांच की जो दरवाजे दिख रहे हैं ऊपर छत नजर आ रही है इसमें।

यहां पर दिखायेगा फ्रेंड्स एक मंदिर दिखाई दे रहा है और नीचे देखिए एक टेंपो नजर आ रहा है ऑटो रिक्शा --

और यहां पर देखिएगा काफी सारी कुर्सियांलगी हुई है टेबल लगे हुए हैं.

और उसके ऊपर देखिए कांच की खिड़कियां नजर आ रही है।

यहां पर देखिएगा फ्रेंड्स एक गेट नजर आ रहा है जाली का गेट नजर आ रहा है।

शायद मेट्रो ट्रेन जहां चलती है ना ये वो है।

ऊपर आसमान भी दिखाई दे रहा है दूर एक पेड़ भी नजर आ रहा है।

यहां पर काफी सारे आलू दिखाई दे रहे हैं जो कि छोटे-बड़े हैं।

यहां पर देखियेगा फ्रेंड्स एक बोर्ड नजर आ रहा है लाल कलर का ये बोर्ड है जिसपे हैवेल्स लिखा हुआ है हैवेल्स --

सामने देखिए एक महिला यहां से जा रही है वाकिंग कर रही है।

ऊपर देखिए पंखे दिखाई दे रहे हैं टू प्लेट्स लगी हुई है।

और आजू बाजू दरवाजे हैं खिड़कियां हैं ऊपर देखो एक पंखा भी नजर आ रहा है और लाइटें भी दिख रही है।

और काफी सारे स्त्रियां पुरुष यहां पर खड़े हुए हैं।

ये देखिएगा फ्रेंड्स राधे कृष्ण की मूर्ति नजर आ रही है जो कि काफी खूबसूरत है काफी सुंदर है।

कृष्ण जी ने बांसुरी बजा रहे कृष्ण जी राधा जी उनके पास खड़ी हुई है।

अर्बन साइकिल वर्क्स यहां पर साइकिल की दुकान जो दिखाई दे रही है उसका बोर्ड दिखाई दे रहा है इस पे लिखा हुआ है ए_वन साइकल --

और काफी सारे पेड़ दिख रहे हैं पीछे पहाड़ नजर आ रहे हैं।

ये देखिएगा फ्रेंड्स साइकल की दुकान दिखाई दे रही है काफी सारी साइकल यहां पर जमी हुई है।

ये देखिए फ्रेंड्स यहां पर देखिए वाशिंग मशीनें दिखाई दे रही है काफी सारी वाशिंग मशीन है यहां पर--

खुर्स्ट कुर्सी भी है टेबल्स भी है और ब्लू कलर --

सफेद कलर का कुर्ता पहने हुए और ऊपर देखिए ढेर सारे गुब्बारे दिखाई दे रहे हैं और वाइन की जो बोटल है वह जमी हुई दिखाई दे रही है और लाइट नज़र आ रही हैं।

कार नजर आ रही है। पेड़ दिखाई दे रहे हैं। ऊपर नीला-नीला आसमान नजर आ रहा है।